और अंदर मैदान है उसके बाद बिल्डिंग है।

और दो जन स्विमिंग कर रहे है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

यहां पे मैदान है। मैदान के सामने स्कूल है। स्कूल के पीछे बगीचा है।

यहाँ पर एक बस खड़ी है बस के सामने ऑटो खड़ी है दो तीन और बहुत सारे पैसेंजर है।